इस तसवीर में हमें एक बिल्डिंग दिखा रही है बिल्डिंग के पास एक लाल रंग का कार कड़ी है और एक

इस तस्वीर में हमे एक बड़ा सा झरना दिख रहा है जोकि चटानो के बिच में से पानी आरहा है ये चटानो के बिच में से

इस तस्वीर में हमें एक बड़ी सी चटान दिख रही है चाटन के आस पास बहुत सारे पेड़ लगे हुवे है

एक तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर सारी डिटेल लिखी गयी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक पुराना किला नज़र आ रहा है किला किले के आस पास बहुत सारे पेड़ भी लगाए गए है किले के पीछे बड़े बड़े पहाड़ भी हमें देखने को मिल रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक रोड रनजर है रोड के उस तरफ लोहे की जलसे पैक की या गया है